यहां पर टा जाली भी बहुत सारे इस घर के अंदर लगे हुए हैं।

पीछे के साइड में एक कैमरा भी लगा हुआ है।

इस फोटो में दिखाई जा रहा है कि बहुत सारे लड़कियां खड़े हैं कुछ लड़कियां बैठे हुए भी हैं पीछे के --

सामने लगता की एक ऑफिस बना हुआ है जिसके आगे तीन ठो आदमी खड़े भी हैं।

और उसके ऊपर देखेंगे तो एक ठो पेड़ पौधा भी लगा हुआ है नीचे बहुत सारे दुकान खड़े हुए है।

सबसे ऊपर में बहोत सारे चीजें लिखे हुए हैं जैसे में बी_एड और इंग्लिश पॉलिटेक्निक बहोत सारे--

इस फूल में बहुत सारे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं उधर एक ग्रास का फील्ड भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और पीछे में--

इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा स्कूल बना हुआ है।

आगे में एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है बना हुआ और ऊपर में एक बिल्डिंग का शीशा भी दिखाई दे रहा है।